जैसे कि हम यहा देख पा रहे हैं यह एक ऑफिस है।

जैसे कि हम यहां देख पा रहे हैं एक रूम है।

सामने ही एक शख्स दिखाई दे रहा है अ आसपास हमें हरे भरे भी दिखाई दे रहे हैं।

ये फिल कैफे हैं जिसके बाहर में हमें कुछ सख्स दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए।

और आस पास में पर्दे लगे पर्दे भी हमें दिखाई दे रहे हैं।

जसक जैसे कि हम यहां देख पा रहे हैं।

और हमें कुछ फादर्स बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और हमें--

जैसे कि हम यहां देख पा रहे हैं यह एक सोनार दुकान है।

दिखाई दे रहे है तथा आसपास में कुछ --

हमें साइड में कुछ बाइक्स खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

जैसे कि हम यहां देख पा रहे हैं यह एक

जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे है यह एक स्टोर है जिसके अंदर में एक व्यक्ति हमें बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।